सामने एक मजीद है जिसमें ऊपर का भाग वाइट कलर और ग्रीन कलर का है और नीचे का भाग स्काई ब्लू कलर का है बगल मे छानी है सामने एक भवन बना हुआ है।

इस इमेज मे ग्लास का सेट है ये स्टील के ग्लास लग रहे है ये ग्लास पानी से भींगे हुए लग रहे है ।

इसमें कुल फोर्टी फोर ग्लास दिख रहे है पीछे का बैकग्राउंड येलो कलर का है नीचे का बैकग्राउंड ब्राउन कलर का है पीछे एक लोहे की स्टिक दिख रही है।

सामने सीट दिख रही हैऔर आजु बाजू ऑरेंज कलर की लाइट है। पीछे टीन का बैग्राउंड है ।

और सामने दूकान में कुछ काटून दिख रहे है अ नीचे राइट साइड में बहोत सारा दूकान का समान रखा हुआ है बगल में ऊपर ग्रीन कलर का गेट है।

यहां पर दो-तीन दुकाने है यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए सामने एक बाबा ने टोपी लगा रखी हुई है ऊपर कुछ सजावट है ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है इसमें स्काई ब्लू कलर रेड कलर और वाइट कलर मिक्स है।

ये एक स्टेडियम है इसके आजू-बाजू स्टेट बने हुए हैं यह एक क्रिकेट एकेडमी है यहां पे कुछ छै सात घर दिख रहे यहां पे कुछ खेल के खिलाड़ी दिख रहे हैं यहाँ---

सामने एक तस्वीर टंगी हुई है एक विवेकानंद स्वामी का पोस्टर टंगा हुआ है ऊपर कुछ पोस्टर्स लगे हुआ है नीचे वाइट कलर की दिवाल है।

यहाँ पर बहुत सारे लोग है सामने कुछ बोर्ड लगे हुए है एक रामदेव बाबा का बोर्ड लगा हुआ है ।

सामने चेयर दिख रही है विवेकानंद का फोटो दिख रहा है बगल में पेड़-पौधे दिख रहे है एक पानी की कैन रखी हुई है।

सामने एक चेयर रखी हुई है एक पानी का बोटल रखा हुआ है चेयर के पीछे गमले है गमले में पौधे लगे हुए है सामने पेड़ लगे हुए है।

उसमे फुल लगे हुए है रेड कलर का कपड़ा लगा हुआ है एक बोर्ड दिख रहा है उसके जस सामने एक आदमी खरा है पीछे एक ए येल्लो कलर का टिन दिख रहा है।

झरना दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे है पत्थर दिख रहे है ऑरेंज कलर के पीछे एक पत्ता--

राईट साइड मे एक आदमी है इसने पिंक कलर की शर्ट और पैरेट ग्रीन कलर की एक पेंट पहन रखी है वो फोन चला रहा है यहां बहुत भीड़ है।